मेरे सामने इक फोटो दिखाई दे रहा है इस फोटो में मुझे दो बस दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे मुझे बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

एक फोटो दिखाया जा रहा है। यह फोटो मुझे रेस्टोरेंट का लग रहा है जो रेस्टोरेंट में छे चेयर --

मुझे एक फोटो दिख रहा है यह फोटो में मुझे एक बड़ा-सा बिल्डिंग दिख रहा है जो बिल्डिंग --

मुझे एक फोटो दिख रही है। यह फोटो मुझे ला पिंजो पिज़्ज़ा दुकान की लग रही है।

और पीछे उनके शीशा है। वो शीशा ब्लू कलर से कलर है।

मुझे इक फोटो दिख रहा है यह फोटो में मुझे --

और एपी फिज की बोतले भी दिख रही हैं।